यह छवि एक होटल की है।

सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक कैमरा नजर आ रही है।

पीछे एक सफेद रंग की स्कूटी भी नजर आ रही है।

एक बिल्डिंग के छत का रंग नीला नजर आ रहा है।

छवि में आसमान का रंग नीला नजर आ रहा है।

इस छवि में दीवार का रंग सफेद है।

इस छवि में एक पतला सा रस्ता नजर आ रहा है।

स्टेडियम के बाहर बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

मकान के आसपास कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के बाहर रस्ते में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

दुकान के बाहर बहोत सारे लाल रंग की कुर्सियां नजर आ रही है।

इस छवि में एक रास्ता नजर आ रहा है।

गमलों में बहोत सारे पीले रंग के फूल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक मकान नजर आ रहा है।

इस छवि में बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

पानी के आस पास बहोत सारे पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

कुछ कंप्यूटर नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक आधा बना हुआ बिल्डिंग नजर आ रहा है।

रेलगाड़ी का रंग नीला है।

दुकान के बाहर बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

छवि में एक रास्ता नजर आ रहा है।